यह एक होटल है। होटल में सभी लोग खाते खाने आते हैं। हर हर तरीके के बल् लगे हैं हर हर तरीके के बल् लगे हैं और यह बहुत बड़ा होटल है।

यहाँ पे एक दू तल्ला मकान है। पूरा बल्ब लगे हुए हैं और बहुत आदमी हैं और ऐ चार चक्का गाड़ी लगे हैं | बआ घर में अच्छे अच्छे बल्ब लगे हुए हैं और ऐ.सी. भी लगे हुए हैं ।

यहाँ पर एक ऐ ऐ पोस्टर में कुछ लिखा है ऑटो का छा --

ये एक आदमी है सर का बहुत फोटो घीच रहा है और अपना भी फोटो घीचा | उनके सामने एक बल है ए आ और वे बगल में पेड़ पौधे हैं बहुत चीज़ चीज़ बहुत सामान के ढेर लगे हुए हैं।

डांस हों रहा है और रंग तरीके का लाइट है। उम्म उम्म पांच लड़की उम्म्म नाच कर रही है और अ चूहे हैं और वीडियो लोग बना रहे हैं ।